और यहाँ पर लाईटे जलती हुए नजर आ रही हैं यहाँ पर कई अनेक मशीने रखी हुई हैं एक्सरसाइज करने के लिए।

यह कोई स्टैशनरी है यहाँ पर अधिक बुके के दिखाई दे रही हैं और बाहर व्यक्ति कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो बुक ले रहे हैं अंदर दो व्यक्ति है जो बुक बेचने वाले --

और एक व्यक्ति ने अपने हाथ में कप पकड़ा हुआ है और उसे कप में चाय है कप का कलर सफेद और लाल कलर का है और उसमें सफेद कलर से कुछ लिखा हुआ है।

अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं काफी अच्छा मौसम लग रहा है सूरज की परछाई नदी में --

यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर कई व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं दो तीन पोस्टर लगे हुए है शिवजी और पार्वती का भी एक पोस्टर लगा हुआ है दीवारों पर।

यहाँ पर कई बुकें रखी हुई दिखाई दे रही हैं अपने-अपने हाथों में कई-कई व्यक्तियों ने कुछ कागज पकड़े हुए हैं साइड में।

और एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ मशीने रखी हुई है एक्सरसाइज करने की और कई व्यक्ति उठक बैठक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं पुशअप करते हुए और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और एक बोटल भी रखी हुई है पर्दा लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है साइड में और भी सामान रखा हुआ है कांच रखे हुए हैं।